इस दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर ये दुकानें है एक ऊपर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अतुल ऑटो गैराज --

लकड़ी का ठेला भी है और कुछ गाड़िया भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए है।

दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा -सा मैदान है जिसमें की बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही है दूर पर बोहोत ऊँची- सी --

इस दॄश्य में हम देख पा रहै है की यहाँ पर देखिए ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर देखिए पेट्रोल और डिजेल का बडा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर ये एक बस --

रॉड लगे हुये है जिसमें की लोहे की चैन पड़ी हुई है और एक लड़का खड़ा हुआ है बाइक खड़ी हुई हैं ।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिए यह एक कक्षा है जिसमें बहुत सारी कुर्सीयाँ पड़ी हुई है यहाँ पर बहुत सारी छात्र और छात्राये बैठी हुई है सामने की तरफ एक --

में बहोत सारे फल रखे हुए है जैसे की इसमें सेफ संतरा अनार और भी बहोत सारे फल दिखाई दे रहै है यहाँ पर लाइटे जल रही है।

लिखा हुआ है बन्सल मार्ट यहाँ पर कुछ स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जमीन पर कही - कही पर घास भी लगी है और जमीन पर टाइल्स भी लगे हैं ।

जैसा की इस दॄश्य में हम देख पा रहै है की यहाँ पर देखिए की एक घना सा पेड़ लगा हुआ है पेड़ के निचे बहोत सारे हिरण दिखाई दे रहै है और यहाँ पर बहोत घाँस--

एक बहोत ऊँची सी बिल्डिंग बनी है और बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है बिजली के खम्बे भी दिखाई दे रहै है यहाँ पर रस्ते में कुछ आदमी भी दिखाई दे रहै है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै है एक बहोत बडी सी नदी है नदी के बीच में एक नाव है नाव पर दो आदमी बैठे हुए हैऔर नदी नाव के उपर दो डिब्ब--

जैसा कि इस दॄश्य में हम देख पा रहे है ये किसी कैफे या रेस्टोरेंट का दॄश्य है जहाँ पर देखिए ये मेजॆ लगी हुई है और मेजों के पास कुर्सीयाँ रखी --

इस दृश्य में हम देख पा रहै है ये एक लंबा सा बरामदा बना हुआ है और छत में लाइटे जलती हुई दिख रही है यहाँ पर देखिए गमले--

इस दॄश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिए ये एक पार्क बना हुवा है और यहाँ पर ये दॄश्य रात का है यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें पंडित दिनदयाल उपाध्याय --